जामताड़ा का जामताड़ा का पेट्रोल पम्प है नंबर वन ये सब से अच्छा तेल देता है। और आहे महंगाई यहां।